एक घर भी दिख रहा है और कुछ पेड़-पौधें भी दिख रहे है कुछ सूखे पेड़ पौधें है और लड़कियां नजर आ रही है।

यहाँ पर महिला और पुरुषों के गुड्डे बनाये गए है और एक पेड़ का पड़े भी बनाया गया है इन लोग इनका रंग चोकलेटी है।